और ये मछली को देख के ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा समुंदर का सार्क जैसा लग रहा है।

और लोग इधर उधर घूम रहे हैं और सामने में एक मंदिर सा है जिसको ऊपर में एक काला रंग का झंडा लगा हुआ है।

टीना से भरा हुआ है और वॉल को भी टीना से दीवार को भी टीना से बनाया हुआ है।

इस स्टील गमला को एक लड़का पकड़ा हुआ है जो पकड़ने वाला का अंगूठा दिखाई दे रहा है।

उसका ऊपर में एक खिड़की है जिसका --

उसका पीछे में छोटा सा एक है।

उसका ठीक नीचे मे योनो कैश का बोर्ड लटका हुआ है।

और इस बिल्डिंग में एक सीढ़ी है सीढ़ी में एक आदमी उतर रहा है उतर रहा है।

और बाहर में जेरॉक्स लेमिनेशन पास फोतो उनके चिपकाया हुआ है और दुकान का अंदर में भी शीशे का रेक बनाया उसमें--

उसका सामने में लेदर बॉक्स रखा हुआ है और उसके पीछे एक आदमी हाथ बांध के खड़े हैं।

और उस रूम में एक टेबुल है और चेयर है और टेबुल के ऊपर में एक प्रिंटर भी है और इस रूम का बाहर इसके --

और दीवार में छोता छोता प्लास्टिक का डब्बा भी रखा है।